कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं | यहाँ गेट भी दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और निचे जमीन दिखाई दे रही है यहाँ पे रोड भी बना हुआ है |

पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसके दीवाल का कलर वाइट है और यहाँ पे बाउंड्री भी उठी है जिसका कलर ग्रीन यहाँ पे कुछ साइकिल और बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है |

इधर हॉल दिखाई दे रहा है और एक माकन बना हुआ है जिसकी दिवार काले रंग का पेंट किया हुआ है और यहाँ पे जाली भी लगी हुई दिखाई दे रही है | यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है बिजली के खम्भे भी दिखाई दे रहे हैं | ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है निचे जमीन दिखाई दे रही है |